ऐसा मैदान आप जेनरल हमेशा आसपास में अपने आसपास देख सकते हैं।

आज कल हर बड़े शहर में छोटे शहर में भी इस तरह के जिम का प्रावधान है जहां पे आप जाकर के कसरत वगैरा सुबह में साम में --

वहां के रहने वाले लोग जो है वो बच्चे आते हैं खेलने योगा करने आते हैं कुछ लोग टहलने आते हैं कुछ लोग बैठे होते हैं समय वगैरा अपना व्यतीत कर--

ये देखिए पशुओं का रहने का जगह बना हुआ है खटाल भी कहते हैं इसको लोग।

यह फल की दुकान है देखेगे यहां पर आपको नारंगी दिख रहा है।

देखिये माता की तस्वीर है आप देख पा रहे है कि पूजन के लिए तीन चार लोग आकर के बैठे है पूजा हो चुकी है कुछ लोग इंतजार कर रहे है।

ग्राहक भी उनके खड़े हैं बिल्डिंग अच्छी सी बिल्डिंग लग रही है किसी को टेंट वगैरह के लिए देखिए लोहे की फ्रेम भी--

ए_सी सलून है जहाँ पर आप जाकर के अच्छे से बालों की कटिंग करवा सकते हैं एयर ग्रूमिंग कर सकते हैं आप --

रिक्शा देखिए बहुत अच्छा रिक्शा है नया रिक्शा लग रहा है लग रहा है रिक्शे की दुकान है जैसे एक व्यक्ति रिक्शा लेने लगता आया हुआ है तो ऐसे रिक्शो की दुकान होती है जगह।

हर जगह के अपने अलग-अलग तरह के रिक्शे होते हैं ये रिक्शे के नए रिक्शे एकदम आप देख पा रहे हैं।

पंखे की दुकान है देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है जहाँ पे आप देख लीजिए पंखा लगा हुआ है चिमनी वगैरह लगे हुए हैं जो चिमनी आजकल हम लोग अपने किचन में रसोई घर में लगाते हैं।

गाड़ियों की बोनट खुली हुई है व बहुत सारे टूल्स जो हैं वो बिखरे पड़े हैं यह रिपेयरिंग सेंटर है यहां पे सारी गाड़ियों की सर्विसिंग होती है।

जैसा हमारे होटलों में हमें दिखता है इसी तरह के साफ सुथरे होटल्स होते हैं हमारे यहां--

कीबोर्ड नजर आ रहे हैं कर्मचारी नजर आ रहे हैं यहां पे जनरली कार्यालय में ऐसा होता है कर्मचारी जहां काम करते है कीबोर्ड कंप्यूटर से कंप्यूटर से--

यह स्टेज का दृश्य आप देख रहे हैं स्टेज के सामने मुख्य जगह पे सात सज्जा की गई है फूलों के द्वारा अच्छ द्वार बनाए गए हैं।

चौखट दरवाजे सब लोग लगवाते हैं तो ये रेडी-मेड आजकल बने हुए होते हैं जिनसे हमारा समय बचता है आसानी से इनको घरों में फिक्स किया जा सकता हैं।

भारत का हमारा झंडा देखिए आसमान में फहरा रहा है।

किसी अच्छे तरह का दृश्य है बहुत अच्छे तरीके से साथ सज्जा किया हुआ है कुर्सी टेबल्स प्लेट्स ग्लास ये सब रखे गए हैं।

बहोत मनोरम दृश्य है बहोत साफ सफाई का ध्यान रखा गया है बहोत अच्छे तरीके की व्यवस्था यहां नज़र आ रही है।

यह खेल का मैदान है देख लीजिए खेल के मैदान के अंदर मनोरम दृश्य है कुछ खिलाड़ी खेल रहे --

हरियाली पूरे मैदान पे छाई हुई है बड़े-बड़े फ्लड लाइट्स लगे हुए हैं। यह खेल का मैदान है जहां खिलाड़ी खेलने जाते हैं और कुछ लोग देख करके इनका आनंद लेते हैं।

यह नदी में देखिए नाव है रंग बिरंगे नाव लगे हुए हैं हरे पीले लाल संतरे ये किसी--

अच्छी जगह के दृश्य है यहां पर लोग इस नाव में बैठ करके--

इसी हाल में पार्टी हॉल में यहां पे व्यक्तियों के लिए बहोत सारे जगहो का व्यवस्था किया गया है टेबल कुर्सियां बहोत अच्छे तरीके से लगाए गए हैं।

ये किसी उद्यान का दृश्य है जहां पर माली है जो की पोधौ को पानी दे रहा है।

यह पेट्रोल पंप का भारी दृश्य है पेट्रोल पंप के बोर्ड लगा हुआ है स्वास्तिक की एनर्जी पेट्रोल डीजल --

यह व्यक्ति लग रहा है कि जैसे कोई बड़ा त्रिस अ घर बना रहा है।

यह इलेक्ट्रॉनिक गीजर है जोकि हम लोग ठंड के मौसम में अपने बाथरूम में उपयोग करते हैं।

जूते की दुकान बहुत अच्छी तरीके से जूते सजाए गए हैं आप देख सकते हैं सभी तरह के जूते हैं यहां पे।

जाते हैं यह की दुकान आप देख पा रहे हैं।